और इस दुकान के अंदर एक लोग बैठा हुया है।

जिसके साइड में एक सफेद कलर की कार खड़ी है।

और नीचे बहुत सुन्दर फर्श किया हुआ है।

और पीछे दो लोग खड़े हैं और वहां पर एक घड़ी भी लगी हुई है और यहां बहुत सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं दूध की कैन भी धरी हुई है।

साइड एक काले कलर की स्कूटी है।

और यह एक दुकान है इस दुकान पर हरे कलर की पंखुड़ियां धरी है पंखे की और--

और दो बोर्ड रखे हैं और एक लोग दिख रहा है।

इस कमरे के अंदर बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है।

यह एक बुलेट की एजेंसी है और इसमें बहुत बुलेट खड़ी है और एक बुलेट साइड में खड़ी है।

इसके बाहर एक पन्ना बिछाया हुआ है और उस पर कुछ लड़के और लड़कियां है।

यह एक परचून की दुकान है और यहां पर भी धरी है।

यह गार्डन है और यहां पर कुछ लड़कियां है और कुछ लड़के हैं।

और इन्होंने स्कूल की ड्रेस पहरी है और ये खेल रहे हैं।

और इस दुकान के बाहर सफेद कलर हुआ है।

और एक क्वॉड है वो जो की वो सफेद कलर का है और इस दुकान के बाहर कुछ--

यह एक क्रिकेट मैदान है और यहां पर बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं।

इस छत पर दो वाइपर भी पड़े हुए हैं और एक फौजी का कपड़ा भी।

इसका गेट भी बहुत सुंदर है और इसके बाहर बहोत सारे लिचिया टंगाई हुई हैं।

और कुछ पंखे लगे हुए हैं कुछ ए_सी है कुछ लाइट हैं।

यह एक घर है इस घर के बाहर ऊं हैं इंटियां बिछी हुई हैं जो कि में लाल और सफेद कलर की है।

जो कि वे नीले कलर की है और उसके पीछे हरे भरे पेड़ है।

यह बहुत सुंदर लग रहा है नजारा और यहां पर एक रेनबो भी है।

यह एक सर्विस करने की दुकान है इस दुकान में चार स्टैंड लगे हैं।

और ऊपर ऊपर में तार है और उससे ऊपर ये टीन वाली घर से हैं।

कुछ के यहां पर बहुत सारे धरे हैं कुछ के यहां पर नहीं धरे हैं।

टोकरी बनी हुई है और उसमें भी पौधे धरे हुए हैं।

यहाँ पर इस कमरे में बहुत सुंदर सुंदर सोफे है और कूलर भी है फ्रिज भी है।

ये एक बहुत लंबी नदी है इस नदी के आस पास बहुत भीड़ है।

और इस साइड में एक शीशा है जिसमें ग्लोब दिख रहा है।

और ग्राउंड के पास हरे भरे पेड़ लगे है।

और यहां पर बहुत सारे लड़कें और लड़कियाँ भी हैं।

और उसके अंदर साइड एक नीला ड्रम धरा है।

यह एक बैठने का स्थान है और यहां पर तीन कुर्सियां रखी है।

नीचे टाइल भी है जो कि सफेद कलर की है।

यह एक रोड है इस रोड पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ भीं दिख रहे है।

और मूर्ति के आगे ग्रिल लगी है जिस पर नीला कलर हुआ है।

दो खंबे हैं नीचे फर्श बिछा हुआ है।

का कलर चॉकलेटी है और--